साथ ही इसके चारों तरफ रेक पे बहुत सारी बुक --

और इसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुईं हैं साथ ही इसके साइड साइड मे बहुत सारी प्लांट्स है।

इस फोटो में बहुत बड़ा गार्डन है इस गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ।

कुछ प्लांट्स को डेकोरेट करके कटिंग किया गया है।

सीलिंग पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

इस फोटो में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जिसका नाम संगीत इलेक्ट्रॉनिक है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

बिल्डिंग के साइड साइड में बाउंड्री की हुई है।

दीवाल का कलर रेड और येलो कलर का है।

और साथ ही इसके साइड साइड में वॉटर फाउंटेन है।

इसके साइड साइड में बहोत सारे लोग हैं।

साथ ही उसके साइड साइड में पे बहुत सारी साड़ियां रखी हुई है।

इस फोटो में एक रोड साइड फोटो है।

इस मॉल का कलर ब्लैक और ग्रे कलर की है और--